और घर के पीछे बहोत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं लाइट वाले खंबे लगे हुए हैं खम्बो के --

इधर की साइड में कुछ बोरे पड़े है बोरो के पास में कुछ सामान पड़ा है नीचे ऊपर भी --

ग्रीन कलर की एक दरी बिछी हुई है और जो लोग खड़े सामने उधर पास में ही --

इनके सामने दीवार के पास एक पर्दा लगा है उसका कलर है स्काई कलर है।

पीछे बहुत सारी बेंच पड़ी है कुर्सियां पड़ी हैं सामने दो लगे हुए हैं इसके अंदर पूरा का पूरा सफेद कलर किया हुआ --